यहां एक गार्डन दिख रहा है जिसमें बैगनी कलर के पौधे लगे हुए हैं और बीच में ग्रीन हैं।

आँगन दिख रहा है | उसमें कुछ गमले रक्खे हुए हैं और कुछ पेड़ दिख रहे हैं और एक मुर्गा दिख रहा है ।

ग्राउन्ड दिख रहा है ग्राउन्ड में बाहर दस लोग खड़े हुये है कुछ बैनर लेके एक ब्लू कलर का और वाईट कलर का --

यहां बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। पूरी अलमारी अलग-अलग कबर्ड बने हैं।

यहाँ बहुत सारी बाईक रखी हुयी है और कुछ लोग खड़े है साईड में एक दरवाजा दिख रहा है उस पे कुछ ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

और एक आदमी बैठा हुआ है और एक चश्मा लगा के बैठा हुआ है और ऊपर छत दिख रही है। छत पे लाईट लगी है।

यह एक बड़ी दुकान दिख रही है जिसपे बहुत सारी अलमारियां हैं और उसमें किताबें जमी हुई हैं।

और एक पुलिया दिख रही है। पुलिया पे गाड़ी जा रही है और पानी में परछाई दिख रही है।

एक बिल्डिंग पिंक कलर की है इसपे बोर्ड दिख रहा है लगा हुआ और पीछे पेड़ हैं।

जो देख रहे हैं वो दो लोग पीछे पुल के साइड में भी खड़े हैं। पीछे यहां पेड़ दिख रहे हैं।